एक आदमी बहोत सारे जहां पर रखा हुआ है वहां पास खड़े हुए हैं।

महल के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक अंग्रेजी बियर मॉडल शॉप नजर आ रही है।

बकरियों के कलर व्हाइट दिखाई दे रही है।

कुछ बकरियों के कलर भूरे रंग की दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पास मारुति सुजुकी की बैनर्स भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

वे बैक साइड से कुछ पेड़ भी दिखाई दे रही है अच्छे अच्छे।

यह एक इंस्टिट्यूट जैसा दिखाई दे रहा है।

एक बहुत बड़ा सा शहर जैसा दिखाई दे रहा है।

थोड़ा सा पेड़ वगैरह भी दिखाई दे रही है।

ये एक जिम जैसी जगह नजर आ रही है।

पास से बहोत सारे बैलूनस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बैनर्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्कूल फंक्शन की तैयारी हो रही है।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

नीचे में दो भगवान जी भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसकी कलर थोड़ी ब्राउन जैसी भी दिखाई दे रही है।

बैक साइड से रेड कलर का से सजाया गया है।

और सजाया गया ये एक शादी वाले मंडप के जैसा सजाया हुआ है।

गार्डन के बैक साइड तरफ तालाब सा नजर आ रहा है।